लिबर ऑफिस में data स्वरूपण यानि formatting data पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगे
automatic wrapping का उपयोग करके text की विभिन्न lines को फॉर्मेट करना
cells को मर्ज करना cells में fit करने के लिए text को कम करना
यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबंटु लिनक्स version 1004 और लिबरऑफिस version 334 का उपयोग कर रहे हैं
पहले हम लिबर ऑफिस calc में borders फॉर्मेट करने के बारे में सीखेंगे
चलिए अपनी personal finance tracker ods file open करते हैं
borders की formatting एक विशेष cell या cells के block पर की जा सकती है
उदाहरणस्वरूप चलिए serial number item cost spent received date account headings वाली cells को format करते हैं
अतः पहले sn से संबोधित serial number heading वाली cell पर click करते हैं
अब left mouse button को hold करें और headings युक्त cells के साथ इसे drag करें
headings युक्त पूरी horizontal row को चुनने के बाद formatting toolbar पर borders icon पर click करें
विविध border स्टाइल के साथ एक drop down box opens होता है
किसी एक स्टाइल पर click करें जिसे आप borders पर लागू करना चाहते हैं
मैं आखिरी option पर click करूँगा
हम देखेंगे कि borders हमारी चुनित स्टाइल के अनुसार formatted हो गये हैं
इस बदलाव को undo करते हैं
चुनित cells अभी भी चिन्हांकित हैं चुनाव the गए पर right click करें और format cells option को चुनें
tab borders टैब पर click करें
आप line arrangement line spacing to contents और shadow style के लिए options देखेंगे
इन प्रत्येक का प्रदर्शित होना calc की default settings है
लेकिन हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इनमें से किसी को भी बदल सकते हैं
userdefined के नीचे आप एक छोटा प्रीव्यू window देख सकते हैं जो चुनाव को दिखाता है
मैं default के नीचे तीसरे option को चुनूँगा और आप देख सकते हैं कि यह प्रीव्यू window में प्रतिबिंबित होता है
मैं style width और color भी बदलूँगा
फिर से प्रीव्यू window में बदलाव पर ध्यान दें
contents के अंतर के लिए synchronize option चुनें
अर्थात सभी margins के लिए समान स्पेस लागू होता है
इसे अचयनित कर सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार margin का स्पेस बदल सकते हैं
मैं top और bottom margins 14pt तक बदलूँगा
मैं आपको खुद से विविध shadow styles का पता लगाने के लिए छोड़ता हूँ
ok पर click करें
यह चयनित स्टाइल को चुनित cells पर लागू करेगा
borders कैसे format करें यह सीखने के बाद अब सीखते हैं कि cells को background colors कैसे दें
cells को background colors देने के लिए formatting बार में calc background color नामक एक option प्रदान करता है
अब देखते हैं कि यह कैसे कार्यान्वित होता है
उदाहरणस्वरूप चलिए headings युक्त cells को background color देते हैं
अतः पहले cell पर click करते हैं जो कि sn से संबोधित heading serial number युक्त है
अब left mouse button hold करें और headings युक्त cells तक इसे drag करें
headings युक्त सभी horizontal row को चुनने के बाद formatting toolbar में background color option पर click करें
एक popअप menu opens होता है जहाँ आप वह color चुन सकते हैं जिसे आप background में लागू करना चाहते हैं
चलिए grey color पर click करते हैं
आप देख सकते हैं कि headings के लिए cell का background grey हो गया है
calc text के multiple lines को फॉर्मेट करने के लिए विविध options प्रदान करता है
पहला automatic wrapping का उपयोग करके
automatic wrapping उपयोगकर्ता को एक ही cell में text की multiple lines enter करने के लिए अनुमति देता है
अतः देखते हैं कि यह कैसे कार्यान्वित होता है
अब अपनी personal finance tracker ods sheet में एक खाली cell पर click करते हैं
उदाहरणस्वरूप सेल संख्या b12 पर क्लिक करते हैं अब सेल पर राइट क्लिक करें और फिर format cells ऑप्शन पर क्लिक करें
अब डायलॉग बॉक्स में alignment टैब पर क्लिक करें डायलॉग बॉक्स में नीचे wrap text automatically ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर ok बटन पर क्लिक करें
अब हम type करते हैंthis is a personal finance tracker it is very useful
आप देखेंगे कि सिंगल सेल में मल्टिपल स्टेटमेंट रैप्ट हो गई हैं बदलाव को अंडू करें
automatic wrapping के बारे में सीखने के बाद अब हम सीखेंगे कि calc में cells कैसे merge विलीन करें
अपनी personal finance tracker ods file में यदि हम sn heading के साथ serial number युक्त cells को और उनके समरूपी items को merge करना चाहते हैं तो पहले sn के नीचे data entry 1 पर click करें
अब कीबोर्ड पर shift की को होल्ड करके रखें और इसके समरूपी आइटम salary के साथ सेल पर क्लिक करें यह दो सेल्स को चिन्हांकित करता है जो मर्ज हो जाती हैं
फिर menu bar में format option पर click करें और फिर merge cells option पर click करें
sidebar जो कि popsअप होता है उसमें merge cells option पर click करें
single cells में दोनों cells के contents को स्थानांतरित करने के लिए दिखाई देने वाले dialog box में yes option पर click करें
आप देखेंगे कि चुनित cells एक में merged हो गई है और contents भी उसी merged हुई cells में हैं
अब मर्ज हुए को undo करते हैं हमने टूलबार में undo ऑप्शन पर क्लिक करके या ctrl + z को एक साथ प्रेस करके किया
आगे हम सीखेंगे कि cell में fit करने के लिए text को कम shrink कैसे करें
सेल में डेटा का फॉन्ट साइज सेल में फिट करने के लिए स्वतः से समायोजित किया जा सकता है चलिए सीखते हैं कि यह कैसे करें
चलिए b14 सेल में this is for the month of january टेक्स्ट टाइप करते हैं आप देखेंगे कि टेक्स्ट सेल में फिट नहीं होता है
text को कम करने के लिए ताकि यह fits हो जाय पहले b14 cell पर click करें
अब मेन्यूबार में format ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर cells पर क्लिक करें वैकल्पिक रूप से सेल पर राइट क्लिक करें और format cells पर क्लिक करें
आप देखेंगे कि format cells डायलॉग बॉक्स ओपन होता है डायलॉग बॉक्स में alignment टैब पर क्लिक करें
dialog box के तल पर shrink to fit cell size checkbox पर click करें और फिर ok button पर click करें
आप देखेंगे कि पूरा text कम हो गया है और इसके font size घटने से खुद व्यवस्थित हो गया है इसलिए text फाइल b14 cell में fits हो गई है
बदलावों को undo करें
अब हम लिबर ऑफिस calc पर spoken tutorial के अंत में आ गये हैं
संक्षेप में हमने निम्न बारे में सीखा
automatic wrapping का उपयोग करके टेक्स्ट की मल्टिपल लाइन्स को फॉर्मेट करना सेल्स को मर्ज करना सेल में फिट करने के लिए टेक्स्ट को कमश्रिंक करना
व्यापक नियतकार्य spreadsheet practiceods शीट ओपन करें
सभी हैडिंग्स को चुनें हैडिंग्स को नीलाब्लू बैकग्राउंड कलर दें
automatic wrapping का उपयोग करके text type करेंthis is a department spreadsheet
निम्न link पर उपलब्ध video देखें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
उनको प्रमाणपत्र भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैंअधिक जानकारी के लिए कृपया हमें contact@spoken hyphen tutorialorg पर लिखें